इस चित्र में डेल कंपनी के लैपटॉप की दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

पीछे की दीवार ऑरेंज कलर की है।

ऊपर रस्सी में भी बहुत सारे शैंपू कुरकुरे चिप्स लेज के पैकेट टंगे हुए हैं।

एक ब्लू कलर की और एक वाइट कलर की--

एक पे भी बच्चों के लिए साइकल रखी है।

नीचे बिल्डिंग के दो स्कूटी खड़ी है।

इस दृश्य में किसी शादी समारोह का चित्र है।

रोड की दूसरी तरफ बहोत सारी गाड़ियां पार्क की गई हैं।

हैंगिंग गमले टंगे हुए है।

इसका शटर ग्रीन कलर का है काउंटर पर एक बार कोड रखा है और एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

भिंडी अनुज के आगे बैंगन नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक हॉल का फोटो है।

बिल्डिंग में पंखे लगे हुए हैं।

यहां पे छोटी सी जगह में बागवानी की हुई है।

पीछे रैक में कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है।

कुछ कुर्सियां रखी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

एक साइड बैठने का बना हुआ है जिस पर कुछ लेडिस और जेंट्स भी बैठे हुए हैं।

रोड के दूसरी तरफ एक दुकान दिखाई दे रहा है।

हमे बिजली का पोल भी नजर आ रहा है।

जहां पे बोर्ड में भाटियां साइकल स्टोर लिखा हुआ है।

एक साइड में लोहे का एक छोटा ठेला भी दिख रहा है।

काउंटर के पास में तीन गमले रखे हैं गमलों में छोटे छोटे तीन शो प्लांट्स लगे हुए हैं।

और साइड से हरे रंग के कपड़े से घिराव किया गया है।

आसपास में बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह होंडा शोरूम का दृश्य है।

शोरूम के अंदर एक कार खड़ी है।

इस चित्र में एक पार्टी का दृश्य दिखाया गया है।

दीवाल का कलर पीला ऑरेंज और ब्लू है।

सीलिंग में एक पंखा और एक बल्ब भी नजर आ रहा है।

और बगल में छोटी छोटी दुकानें हैं।

सिनो में टी_वी_एस लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति लाल रंग का फुल स्लीव का टीशर्ट पहने हुए हैं।

वेट करने के लिए एक बोरे को लटकाया गया है।

इस चित्र में कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

साइड में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर में कुछ बाइक और स्कूटी खड़ी की हुई है।

और एक महिला काले रंग के बुर्के में है।

बिल्डिंग के बाहर भी कुछ लेडीज लोग बैठी हुई हैं।